यहाँ अस पास डेकोरेशन का काम किया हुआ है शीशे लगे हुये है दो लोग खड़े है।

बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है यहां आस-पास।